यहाँ पे भी कुछ फूल दिख रहे हैं की वो भी बहुत सुंदर फूल दिख रहे हैं रंग-बिरंगी फूल दिख रहे हैं पिले लाल--

बहुत सुंदर लग रहे है यहाँ पर पेड़ भी देख रहे है एक खेत में बहुत -सी गूभियाँ भी रखी --

ई पार्क दिख रहा हैं की यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ हैं उसपे से वो नीचे की ओर आ रहा हैं यहाँ पे की कुछ कमे ईताबे टाइप का लगा हुआ हैं उसपे बना हुआ हैं उसके नीचे--

मैदान भी बहुत सुन्दर डला है यहाँ पे पत्थर भी बहोत दिख रहे है छोटी - छोटी - सी पत्थर दिख रहे है यहाँ पे मैदान अलग --